जहाँ कि काफी पेड़-पौधे आसपास लगे हुए हैं।

यह कोई कार्यक्रम चल रहा है।

एटीएम केनरा बैंक का है।

और एक लाल चेयर रखी हुई है।

जो कि एक चारदीवारी के अंदर बंद है।

जिस की फोटो थोड़ी दूर से खींची गयी है|

जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

काफी बड़ा है और उसके आसपास --